कुछ कुर्सी का कलर ब्लैक है साइड में शीशे लगे हुए हैं।

साइकिल लिए हुए हैं बहोत सारे मोटरसाइकिल नजर पड़ रहा है।

वहीं नजर पड़ रहा है ये मछली बाजार जैसा है।

रैक बना हुआ है साइड में बल्ब जल रहा है।

फैब ईग लिखा हुआ है इसमें बाहर कुर्सी लगा हुआ है कुछ --

फोटो में लक्ष्य इंटरनेशनल एकेडमी लिखा हुआ है।

अ लोहे के खंभे नजर आ रहे उसके बहुत सारे सामान रखे हुए है।

बिल्डिंग के बाहर कुछ लोग खड़े हैं कुछ लोग बिल्डिंग के अंदर हैं।

बहुत सारे हरे भरे पेड़ नजर पड़ रहे हैं साइड में एक लोहे का--

है एक बाइक दिख रहा है एक व्हाइट कलर का गाड़ी दिख रहा है।